एक बोर्ड दिखा रहा हैं जिसपर डॉक्टर एच.आर. मिश्रा लिखा हैं उसका बेकग्राउन्गड ब्लू है | दीवार दिख रही है जो सफ़ेद कलर की --

इन्होने टी-शर्ट पहनी हुई है एक निचे कोट पहना हुआ है ऊपर भी एक दूकान है जो दो डमी खड़े हुए हैं एक ने हरा शर्ट पहना हुआ है दूसरे ने भी हरा शर्ट पहना हुआ है काँच की दिवार दिख रही है।

तार दिख रहे है आस-पास पेड़-पौधे दिख रहे है दूर एक और बिल्डिंग दिख रही है पोल दिख रहा है गाछ दिख रहे है।

एक लेडिस खड़ी है एक पोस्टर पे बच्चे खड़े हुए है एक आदमी ब्लैक जैकेट में दिख रहा है ऊपर आसमान साफ है वी मार्ट लिखा --

कांच भी दिख रहा है नीचे भी लेकिन व्हाइट टाइल्स दिख रही है रोशनी अंदर आ रही है और कुछ बना हुआ दिख रहा है गोल चकरी इंटे दिख रही है।

एल.ई.डी. ट्यूब लाइट दिख रही है नीचे लोग दिख रहे है कुछ लोग इधर-उधर घूम रहे हैं आस पोल दिख रहा हुआ हैं।

एक बिल्डिंग दिख रही है जिस पे गंगा हॉस्पिटल लिखा हुआ है बाइक रोड पे खड़ी हुई है एक लेडिज दिख रही है।

स्टूल दिखरा हुआ है अंदर एक व्यक्ति दिख रहा है बाहर जो पोस्टर है उसपे मॉडल दो खड़े हुए है लड़का-लड़की बाहर कपड़े भी टंग हुए है। ऊपर गुलाबी बैकग्राउंड में वाईट कलर मे टिटेन लिखा हुआ है।

जाएका पैलेस लिखा हुआ है मटन चावल बिरयानी स्पेशल लिखा हुआ है में काए दिख रहा है मोमोस पचास रुपया लिखा हुआ दिख रहा है।

होटल प्रदीप पैलेस लिखा हुआ है नीचे सीढ़ियां दिख रही है रेलिंग दिख रही है पीछे आसमान दिख रहा हैं आस-पास छोटी-छोटी मकान दिख रहे है नीचे --

खम्बा दिख रहे हैं ऊपर पंखा दिख रहा हैं लाइट दिख रही है नया लाइट दिख रहा है नीचे टाइल्स लगी हुई दिख रही है रिफ्लेक्शन दिख रहा है आस-पास दीवाल सफ़ेद --